जो दुकान है वह एक सूट की दुकान--

जो कि यूनिसेक्सुअल है जहां पे लड़कियां और लड़के दोनों बाल कटा सकते हैं और अपने--